मंदिर है मंदिर के यहाँ बड़का सा गेट पे एगो बड़ा सा घंटा है बजा ।

चद्दर में बैलून साटा है।

भैसी बंधा है भैसी के बछड़ा है दो।

बोर्ड के अलावा पुतला-वुतला --

यहां बस स्टैंड है बस स्टैंड के अलावा --